देख रहे हैं यहां एक दो गधे से दिखाई--

पानी जैसा दिख रहा--

और उसके अंदर भगवान भी --

काफी अच्छा गुब्बारों से किनारे पे सजाया है।

यहां पे काठून जैसा बनाया गया है।

सुंदर सुंदर से दिख रहे।

काफी साफ सुथरी जगह भी दिखाई दे--

सड़क जैसा दिखाई दे रहा है।

सकते हैं यहां पर एक--

एक लाइट भी लगी हुई है जैसे की--

बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है।

सारी स्कूटी भी रखी हुई--

बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क --